टूटा फूटा पत्थर है और एक आदमी बड़े धीरे-धीरे जा रहे हैं और यह आदमी बड़े ऊंचे हुए है और बड़े छोटे और बड़े-बड़े पेड़ है छोटे-छोटे--

यह दुकान है इसमें हेलमेट भी रखा हुआ है एक आदमी है और ऊपर मे चार्जिंग उचार्जिंग का कोई दुकान है बहुत सारा पोस्टर टंगा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है टोपी ओपीर है और एक सधारण का बाइक है।